और बीच का पोज जो ब्राऊन कलर का है और डेकोरेटिव आईटम --

ये एक जिम की पिक्चर है।

सामने में बहुत सारे ईंटें है ईंटें के साथ बहोत सारी मिट्टी भी है।

सामने वाले स्टूडेंट में की पिंक कलर की पाउच है वह कुछ ड्राइंग कर रही है।

यह एक ऑडिटोरियम हॉल दिख रहा है जहां बहोत सारे गाड़ियां है दो अल्टो गाड़ी है।

यह नाहरलगान की बरुन ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन वाले यहां ब्रिज है जो ब्रिज को बहुत बड़े बड़े आह तारों से बांधा गया है।

और पीछे में बुद्धा की स्टेचू है और दो नीले कलर के सजावट की समान--

आसमान ब्लू है और यह चर्च में बहुत सारे आरचज बने हुए हैं।

जिसमे दो ट्राइपॉड है एक यलो कलर की बॉक्स है नीचे एक इंसान है जो ब्लैक कलर का बैग पहना हुआ है।

और बहोत सारे पत्थर है।

ये कंप्यूटर लैब की पिक्चर है यहां छः मॉनिटर हैं।

पीछे में अह गच्छियां और नदिया नजर आ रहा है।

यह एक रेस्टुरेंट का पिक्चर दिख रहा है जिसकी बीच में टेबल है और लेडर चेयर्स एंड वुड चेयर्स सीढ़ी की ओर में एक पॉट है जो लाल कलर मे है।

ये एक मिठाई शॉप की दुकान है यहां बहोत सारे मिठाई है।